इस चित्र में हमें एक जगह दिखाई दे रही है जो पूरी पैक है यहाँ पे ऊपर जो है प्लास्टिक्स से ये पूरी पैक है नीचे यहाँ पे जो है एक साइकिल दिखाई दे रही है।

यहां पे कुछ छोटे छोटे लकड़ी के पिलर भी लगे हुए हैं और कुछ ऊपर हमें एक पेड़ दिखाए हैं।

इस चित्र में हमें कुछ ढोलक रखे दिखाई दे रहे हैं उस ढोलक में कुछ एक मूर्ति भी रखी हुई है एक आदमी उसमें से बाहर आ रहा है।